दुकान के सामने बहुत सारे गाड़ियां खड़ी है ।

यह एक रूम का दृश्य है इसकी दिवाले सफेद रंग की दिखाई दे रही है दीवाल के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है।

सामने एक चेयर मैरून कलर का है।

यहां पर बहुत सी लाइटें जली हुई है यहां पर पर्दा लगा हुआ है जिसका रंग काला और पीला रंग का दिखाई दे रहा है।

इस दुकान के सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का शर्ट और ब्लैक कलर का जींस पहनी हुई है।

दुकान के सामने एक बाइक दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे--

काउंटर के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।

यहां पर गिट्टी और बालू दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक हरा रंग का बाल्टी रखा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है इसकी दिवाले सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

नीचे एक कारपेट बिछाया हुआ है इसका रंग हरा है।

यहां पर बहुत सारे डेकोरेट किए हुए हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक टब दिखाई दे रहा है जिसका रंग लाल है।

यह एक खाली मैदान का दृश्य हैं।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

इसमें चाट और गुपचुप को दिखाया गया है।

सामने एक हाथ में एक प्लेट में चाट को लगाया के दिया गया है।

टावर के अंदर से एक बहुत मोटी तार लगी हुई है जो काले रंग की दिखाई दे रही है।

पोस्टर में कुछ व्यक्ति को दर्शाया गया है।